यह एक ऑटो है। ऑटो के बगल में पानी का दुकान है।

जो कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर कई पर कई-कई कई-कई यहाँ लाइन का --

और बहुत इस पर घास बढ़ गई है एवं अगल-बगल बहुत पेड़-पौधे एवं झाड़ियां है।

यह राजकीय औधोगिक परीक्षण संस्थान है जो कि त्रिवेणीगंज सुपौल है।

और यहां पर कई लाइटें एवं --

यह एक विद्यालय है और विद्यालय में नगरपालिका आमनिर्वाचक दो हजार सत्राह नगरपरिषद् सुपौल वार्ड संख्या एक मतदाता क्रम संख्या का नाम एक उत्क्रम मध्य विद्यालय --

और चारो ओर बहुत ही अच्छे-अच्छे कलरो द्वारा सजाया गया है।

और यह दृश्य बहुत ही सुन्दर एवं बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर जिम बनाया जाता है जो कि इंग्लिश में लिखा है व्हाट वी फेस में लुकिंग इनसोनटेबल बट व्हाट आई लर्नड इज दैट वी अस अलवेज स्ट्रॉंगर आई हैव वी नाउ --

और अगल-बगल में कॉ और बछ्ड़े को खाने के लिए और बोरा में धान भरा हुआ है जो रखा है बढ़िया से संभाल के।

यहाँ पर औरत फुटबॉल एवं बच्चियां एवं पुरुष खड़े है।